ट्यूबलाइटे दिख रही है और एक टेबल दिख रही है सामने की साइड जो कुछ-कुछ चीजे रखी हुई हैं ।

सामने यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा हे।

ब्लू कलर की शर्ट में एक सामने की साइड दिख रहा हैं ।

बॉक्स दिख रहे है सामने की साइड खुला आसमान दिख रहा है सामने --

और खिडकियाँ दिख रही है सामने बहोत से बोर्ड लगे हुए दिख रहे है गेट दिख रहा है सामने की साइड --

और एक चद्दर का शेड बना हुआ घर दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है खिड़कियाँ दिख रही हैं ।

केमरा लगा हुआ दिख रहा हैं ।

अ सामान दिख रहा है चद्दर का शेड दिख रहा है सामने से दरवाज़ा --

और बहोत से बच्चे बैठे हुए दिख रहे है सामने की साइड कुछ --

और बहोत से लोग दिख रहे है सामने की साइड बहोत से पेड़- पौधे दिख रहे हैं ।

और कुछ मकान का निर्माण दिख रहा है सामने की साइड पेड़ -पौधे दिख रहे हैं ।

अ जालियाँ दिख रही है सामने की साइड लोहे की और बहोत से इंस्टुमेंट दिख रहे है एक मोबाईल दिख रहा है सामने के साइड कप दिख रहे है।

और लाइटे दिख रही है।

व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है सामने की साइड --